बहोत सारे लोग दिख रहे है और बहोत बड़े बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहे है ।

और बहोत सारे पेड़ पौधें और बहुत बड़े ज़मीन है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे भी है और बहोत बड़ा जमीन है ।

और शटर दिख रहा है कुछ प्रिंट हुआ है उसमें और फिर उसके बगल में भी शटर दिख रहा --